यहाँ एक ग्राउंड है यहाँ पर दिलीप डी.जे साउंड सर्विस का बोर्ड लगा हुआ हैं।

इन्होंने मूर्ति के ऊपर गेंदे का हार पहनायाँ गया हैबहुत अच्छी मूर्ति लग रही है।

ऊपर ब्लैक कलर के बादल दिख रहै है लाइटिंग भी बहोत सुन्दर लग रही है नाईट का समय है।

यहाँ पे डॉल एक पिंक कलर की है पर्पल कलर की है बहुत सारे खिलोने की दुकान है ये --

यहाँ कुछ घर है घर के सामने एक पेड़ दिख रहा है उसके नीचे की शाखा दिख रही है।

निचे स्वीट बोर्ड लगा है साइड में एक बेड दिख रहा है।

गुलदस्ता रखा हुआ है जो कुण्डी मे एक छोटा सा पेड़ लगा हुआ है एक टीचर एक के हाथ में माउंट पेपर दिख रहा है।